ऊपर काला कलर का टी-शर्ट पहना है और यह नृत्य कर रही है एक --

मूर्तिम मूर्ति जो है उसको कपड़ा पहनाया गया है और यह मॉल पूरा काँचॆ काँच पक्का का बना हुआ हैं ।

और एक इंसान जो पूजा कर के आपस निकल रहा है पीछे साइड पेड़-पौधा लगा हुआ है और बहुत सुन्दर दिख रहा--

चार पाँच बलब जो बर रहा है जल रहा है और यहाँ कुछ खिलाड़ी का तस्वीर भी लगा हुआ है।

जैसे की जो लोग अमीर रहते है वो मोटा ही हो जाते है खा-खा कर --

यह अभी-अभी उद्घाटन हुआ है क्योंकि यहाँ फुग्गा लगा हुआ है।

हमेशा रामदेव महाराज जी बोलते है योगा करना चाहिए लेकिन करते नहीं है।

वैसे लग रहा है यहाँ कम से कम एक दो साल से खुला नहीं है।

लगभग-लगभग सात साल पहले यहाँ पानी बहुत अच्छा दिख रहा है बगल में जो पेड़ हैं वो--

और यहाँ लड़की लोग के लिए ज्यादा कपड़ा देख रहा हैं ।

और मैनपाट का गौतम बुद्ध का जो मंदिर है वहाँ से लिया गया हैं ।

यहाँ दो दोस है यहाँ दो दोस --

मैदान जैसे है जिसमे ऑटो दो ऑटो दिख रहा हैं ।

और पार्क जगह से यहाँ देखने के लिए दो लड़की आयी हैं ।

यहाँ टेंट लगा हुआ है लग रहा है यहाँ कुछ--

रूम है यहाँ हलिलुया हो रहा है जैसे लग रहा है ऊपर प्रभु ईशु मसीह का क्रुश जो लगा हुआ है।

और यहाँ लड़का कपरा जो पेहना है वह काला कलर का पेहना हुआ हैं।

और इसमें बहुत सारे कुर्सी लगा हुआ हैं ।

यहाँ जो है प्रभु यीशु मसीह का चर है जैसे लग रहा है।